बहुत सारे खेत दिखाई दे रहा पहाड़ दिखाई दे रहे एक येलो कलर की बोरी दिखाई दे रही है रोड पे पिंक और ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चीजे दिखाई दे रही है।